और ये ये सारा भी सीमेंट से बना हुआ है अभी इसको कोई भी पेंटिंग भी नहीं हुई |

आग बुझाने के लिए अब काम करते हैं।

मंगला कमला होम्योपैथिक स्पेशल कॉलेज एंड हॉस्पिटल .

और इस सैलून का नाम है हेयर एक्सपर्ट प्रोफेशनल ।

लिए खड़ा हुआ है । यहाँ पर दो-तीन खंबे है पीछे बहुत सारे पेड़ भी है ।

जिसमें एक ट्रक एक पेट्रोल पंप --

जो की चोदा फरवरी को हुआ था।

कॉपी पेन ले गए उसमे लिख रहा है ।

और साइड में ही एक पानी की नली भी बह रही है।